यह खाली मैदान लग रही है।

सामने एक छोटा सा कुत्ता दिखाई दे रहा है।

यह एक इंसान लैपटॉप पे अपना काम कर रहा है।

यहां के पिलर्स ब्लू कलर के हैं।

सर्कल के आकार में सारे लड़का लडकियां बैठे हुए हैं।

एक इंसान मछली बेच नजर आ रहा है।

इसमें से बहोत से गाने बजते हैं।

एक छोटा सा घर है बहोत पुराना नजर आ रहा है।